ये प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

बहुत सारे माइग्रेंट लोग यहां में आके खरीदते हैं और यह बहोत बिजी एरिया में है।

शोरूम का होगा लग रहा है मुझे।

यहां जाके फैब्रिक खरीद सकते हैं या मेरे तरीके मुझे बहुत तरीके--

और एम_एस फैब्स शायद से दुकान का नाम।

इसके बाद में बहुत रंगीन तरीके की फैब्रिक से और बहोत क्लीन रखा गया है जगह को मुझे पसंद आया ये जगह।

खुशी जी का दुकान है।

मुझे देख के लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा सलून है।

और बीच में गणेश की मूर्ति रखी हुई छोटी सी।

ये जगह बहोत फ्रेस लग रहा है और--

ये एक ब्यूटीफुल सा व्यू है जिसमें हमें झील दिखाई मिल रहे हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई मिल रहे हैं।

फिलहाल के लिए कोई रिसेस क्लास होती होगी फ्री क्लास । इसके लिए स्टूडेंट लोग बात करते हुए दिखाई मिल रहे हैं। मुझे दो लड़के दिखाई मिल रहे हैं। लड़के --

की मुझे देख के लग रहा है कि कोई सरकारी अस्पताल हो सकता है क्योंकि आगे एंबुलेंस खड़ी है।

मेरे ख्याल से एक ही डेस्टिनी पकड़ेंगे।

एक लाइट्स ऑन है और मुझे देख के लग रहा है कि ये रास्ता नदी किनारे है।

जब ढंग से तो पता नहीं चल रहा देखकर की क्या कौन सा भगवान है बट --

रंगीन तरीके के कपड़े पहने हुए लोगों ने और बहोत अतरंगी सा माहौल बना हुआ है।

मुझे तो आईडिया नहीं है कि यह क्या होता है बट --

लग रहा है कि ये कोई पारिवारिक माजलिक लिए हो सकता है पारिवारिक कोर्ट हो सकता है।

एक चेयर कुर्सियों की दुकानें हैं ये एक।

काफी सारी चेयर्स रखे हुए हैं।